यहा ऊपर सिल्लिंग है और अंदर कुछ म्यूसियम का समान है।

और मुझे इधर दो लोक दिखाई दे रहे है और अंदर ब्लू कलर का कवरिंग है।